यह हमें एक फिसल पट्टी दिख रहा हैं जिसमें छोटे-छोटे बालक बालिकाए झूल फिसल पट्टी में फिसलते है जिसमें उन्हैं बहुत आनंद की अनुभूति होती हैं इसमें बच्चे गिरते भी है।

ये हमें एक तालाब दिख रहा हैजिसमें अनेक प्रकार के जीव -जन्तु भी रहते है जैसे कि मछली केंचुआ --

एवं विभिन्न प्रकार के लाइटस साज सजावट का सामान इत्यादि इसको सजाने में उपयोग किया गया है।

यहाँ हमने यहाँ हमें सामने माता राज मोहनी भवन दिखाई दे रहा है।

यहाँ का कैम्पस बहुत ही बड़ा हैं ।

यह एक प्रकार का मियुजिक सिस्टम है जिसमें हाई वाल्युम में गाना --

बहुत बड़ा खेत दिखाई दे रहा है जिसको देख़ने पे ऐसा लग रहा है कि सरसों का खेत है इसके पीले-पीले छोटे-छोटे फूल होते हैं जो की बहुत सुन्दर दिखाई दे रहे है एवं यहाँ--

बहोत ही टाइप की कलरफुल गमले है।

बहुत अच्छी तरिके से क्रमबद्ध व्यवस्थित किया गया है।